आसमान दिखाई दे रहा है तीन चार तार हमे ऊपर दिखाई दे रहे है।

इसके पीछे हमे एक ट्रेक्टर भी खडा हुआ दिखाई दे रहा हे जो ग्रीन कलर का है और जिस की छत येलो कलर की है और हमे एक पुराना किला दिखाई दे रहा हे एक तार भी --

ये साम की पिक है सूर्य ढल चुका है अअ हमे यहाँ गार्डन दिख रही है जिसमे पूरे मे घास हे छोटी-छोटी एक जीप खड़ी हुई दिख रही है जो व्हाइट कलर की है।

इस इमेज हमे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें दो बोरियाँ रखी हुई है उन्मे कुछ समान रखा हुआ है और --

और हमे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है एक तगारी रखी हुई दिख रही है जो ब्लू कलर की है दो कुर्सियाँ दिख रही है जो ब्लैक कलर की है।

सामने हमे एक कॉलेज टाइप का दिखाई दे रहा है और गार्डन दिख रही है पेड़ लगे हुए है।

सामने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक बोरी रखी दिख रही है और इसमे हमे कुछ बिस्किट मिस्कुट के पैकेट जंगलों मे रखे हुए दिखाई दे रहे है और पीछे एक सटर भी दिखाई दे रही और जो--

इस इमेज { हमे बहुत सारा सामान बक्सों में रखा हुआ दिखाई दे रहा है और हमे यहां पर टंगे हुए भी सामान दिख रहे है एक पंखा लगा हुआ है। }

ये एक सो तीन नंबर कमरा है जिसमे गेट लगा हुआ दिख रहा है ओर सामने हमें और पोस्टर भी लगे हुए बहोत सारे दिखाई रहे है।

इस इमेज मे हमें एक टेबल पर एक पानी का कन्टेनर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और रेड कलर की कोई दीवाल सी उठी हुई दिखाई दे रही है पीछे खिड़की भी दिख रही है।

जो व्हाइट कलर के शर्ट पहने है चसमा लगा है ओर मास्क लगाए हुए है और एक दूर आदमी एक खड़ा दिखाई दे रहा है जो रेड कलर के शर्ट पहने हुए है।

इस इमेज मे हमे एक सामने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा है प्रधान डाकघर चुरू और नीचे हमे शटर वाला गेट --